पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हो और यहां इनको कैश भी दे सकते हो यहां से आप देखिये यहां पे --

हैलो दोस्तों आपको सामने बिल्डिंग नजर आ रही है ये बिल्डिंग यहाँ की काफी खूबसूरत बिल्डिंग है इस मोहल्ले की।

आप इसमें स्विमिंग पूल में एकबार नहाने के लिए जरूर आइए।

हेलो दोस्तों आप देख सकते हो सामने गार्डन नजर आ रही है गार्डन में ये जो --

आप देख पा रहे हो यह वर्कर लोग खड़े हैं जो कि इसको बना रहे हैं।

आप देख सकते हो ये मंदिर है मंदिर के बाजू में ये सभी लोग खड़े --

हेलो दोस्तों आप देख सकते हो सामने आपको मंदिर नजर आ रहे हैं ये तीन मंदिर यहाँ पर आप देख सकते हो लगातर इनमे गौतम बुद्ध की --

यहां पर बहुत ज्यादा कीचड़ वगैरा हो गई है य --

हेल्लो दोस्तों आप देख सकते हो सामने यह रो रोड गई है जो कि इस मकान की और अंदर जाती है यहाँ से --

कुर्सी है यहाँ पर फूलों की --

क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है।

नदी में थोड़ा कम पानी बचा है आप साइड में किनारे में पेड़-पौधा देख सकते हो।